चाय की बोतल रखी हुई दिख रही हैं बोहत सारी --

पेड़ भी दिख रहे हैं एक ग्रीन कलर का बैग रखा हुआ दिख रहा है बादल दिख रहे हैं रोड दिख रही है।

ये एक रेलवे स्टेशन दिख रा है यहाँ दो पटरी दिख री है।

कुछ ग्रे कलर के चद्दर दिख रही है लाइट के वायर दिख रहे हैं बादल दिख रहे हैं जो की सफ़ेद कलर के हैं।

ये एक हॉल दिख रहा जिसमें बहुत सारी कुर्शी लगी हुई दिख रही है एक ब्लैक कलर की टेबल दिख रही है और उस पे --

अंदर उसके कारपेट का कलर ब्लू कलर का है लाइट जलती हुई दिख रही है।

बाउल मिट्टी का बना हुआ है।

ये एक किराने की दुकान दिख रही है जिसमे बोहत सारी लकड़ियां के आलमारियां बनी हुई है उसमे बोहत सारा सामान रखा है।

साइकिल खड़ी हुई दिख रही है लाइट का खम्बा दिख रहा है बहोत सारे वायर दिख रहे हैं बादल दिख रहे हैं।

सीढ़ी दिख री है नीले कलर का परदा लगा हुआ दिख रहा है।

बादल दिख रहे हें एक छतरी लगी हुई दिख री है।

बोहोत सारे जेंट्स दिख रहे है सामने दो बाइक खडी हुई दिख रही है ब्लैक कलर की।

ये एक दुकान दिख रही है जिसमें बहुत सारे बैट रखे हुए हैं ट्रोफी रखी हुई हैं।

ये एक दरगाह दिख रही है जो की पुरी वाइट कलर की है और इसकी गेट पे दो बाइक खडी हुई दिख रही हैं एक लड़का खड़ा है उसने वाइट कलर की टी-शर्ट पेहनी है और ब्लैक बैग टांग रखा है।

ये एक होटल दिख रही है यहाँ पे एक टेबल लगी है।

बहोत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं एक हेलोजेन दिख रहा है ऊपर बहोत सारे बादल दिख रहे हैं नीले कलर के।

साइड में दो ब्लैक कलर की खिड़की दिख रही है ऊपर रेड कलर का पुता हुआ है एक होल्डिंग लगा हुआ है।

ये एक मस्जिद दिख रही है जिसमे बोहोत सारे लोग बैठे हुए है किसी ने टोपी लगा रखी किसी ने नहीं लगायी है।

साइकल रखी हुई दिख रही है पीछे कुछ बिल्डिंग भी दिख री हैं।